और ऊपर बालों का और बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ देखने के लिए यहां पर बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई है और यहाँ पर एक दुकान है वहां पर बहुत सारे --

चित्र में देखने के लिए यहां पर बहुत सारे आदमियो ने क बैठे हुये है और खड़े हुये है यहां तो एक बड़ा सा बुक स्टोर है यहां पर यहां पर आदमियो ने सेल्फी ले रहा है।